यहां पर बहुत सारी शॉप्स दिख रही है एक कार्ट मार्ट दिख रहा है एक जनरिक प्लस आधार दिख रहा है।

यहां पर लिखा है मिराया प्लाईवुड उस पर एक नंबर लिखा हुआ है।

बहुत सारे पटाखे जल रहे हैं नीली कलर की लाइट जल रही है।